जैसे मैं देख सकती हूं कि यहाँ पर बस ताने का है। वहाँ पर बस खड़ी है और कितने सारे लोग भी खड़े हैं।

जैसा मैं या देख सकती हूं कि यह एक सलून है हेयर कटिंग का।

वहाँ पर एक पानी का जार दिख रहा है। वो जाने के लिए जगह नहीं है। एक साइड में एक कतार है।

जैसा मैं देख सकती हूं की यह एक ऑफिस है ऑफिस में लड़के लोग काम कर रहे हैं।

पत्ते दिख रहे हैं। नीचे पत्ते गिरे हैं। एक आदमी खड़ा है।

और दो लड़का लड़की लोग डांस कर रहे है और छोटे-छोटे स्टूल दिख रहे है ।

जैसे मै देख सकती हूँ की यह एक दुकान है। दुकान के अंदर कलर के डिब्बे दिख रहे है।

और अलग-अलग प्रकार के सामान दिख रहे हैं और चेयर दिख रहा है और दुकान खु --

मैं यह देख सकती हूं कि यहाँ पर एक रिसॉर्ट है यहाँ पर एक पानी है स्विमिंग पूल है और वह बाजू में --

अच्छे से पानी बह रहा है और साइड-साइड में पौधें हैं और अच्छा अच्छा डेकोरेशन दिख रहा है।

अ कुरकुरे का दुकान है। उसके बाजू में मेडिकल है और बहुत सारी गाड़ियां दिख रही है और एक बड़ा घर दिख रहा है।

मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि एच.डी.एफ.सी. बैंक है।

बैंक के सामने चार लड़के लोग खड़े हैं और उसके साइड में औरत लोग बैठे हैं।

मुमुदाबाद और उसके सामने वाणिज्य कर विभाग लिखा हुआ है और एक स्कूल है।

और ब गार्डन के बाजू में छोटे-छोटे पौधे हैं।